बहोत सारे सामान दिख रहा है लेकिन क्या क्या सामान है अ--

यहां बस और एक गाड़ी दिख रहा है बाइक है स्कूटी है कार है।

इस पिक्चर पर रास्ते रोड रास्ता दिख रहा है और साइट में कुछ मिट्टी भी दिख रहा है और रस्ते पर--

और कुछ पखियां दिख रहा है और उसके साइड साइड पिंजरा--

और इसकी उम्मम पांच भी ब्लू कलर का लगा हुआ हैं।

उसकी बालकनी में एक लड़का भी खला है खड़ा नीचे भी एक लड़का खड़ा--

कु स्कूटी बाइक और साइकिल दिख रहा है बहुत सारा है एक रास्ता भी है और चारों तरफ गछ ही गछ पेड़ ही पेड़ है।

तो समझ नहीं आ रहा है लेकिन लिखा हुआ है आंकना स्कूल --

अ ऊपर झुकती हो जाईबा सुचना विज्ञान--

यहां एक रास्ता हैं और रास्ते के सामने एक स्कूल हैं।

एक पुरुष खड़ा है वो वो वो ब्लू कलर का पैंट पहना है।

वो येलो कलर का शर्ट और ग्रे कलर का पैंट पहना है ब्लू --